उनमे से एक लड़का सफ़ेद रंग का पहना हुआ है। दो लड़के नीले रंग के काफ़ी सब लड़के लाल रंग के चेक्स स्कूल शर्ट पहने हुए है।

है उनके आस पास बहुत भीड़ ही रोड़ो पर इमारतो पर और बहुत हर फ्लोअर पर बहुत भीड़ है।